और पहाड़ी क्षेत्र है छोटे-छोटे पेड़ है और बहुत सारे ट्री है।

यहां पे बहुत सारे लोहे हैं में हैं नीचे मिट्टी है सूखा पत्ता हैं।

एक ग्राउंड है ग्राउंड में फुटबॉल है एक जो की हवा में उछला हुआ है कुछ चेयर है जो की रेड कलर का है |

एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और कुछ खेत पटार हैं जिसमें आम का पड़े लगा हुआ है आम के पड़े आम फरे हुए है जो की कचे है ऊपर आसमान है जो की खली और सफेद है।

ताड़ के पेड़ है और छोटे-छोटे घर है ज्होप्दी है कुछ खम्भे है जो कि बॉस का घेरा हुआ है बाउंड्री से--

यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा होटल है | होटल में बहुत सारे आदमी हैं जो की रेड कलर के एक आदमी कपडा में आया हुआ है और टेबूल बिछा है जो की वाइट कलर में है कुर्सी है जो भी है वह वाइट और रेड कलर में है |

यहां पे एक स्कूल है जो कि बहुत ही बड़ा है और खपड़ो का डिजाइनों का है कुछ खंभे लगे हुए है बांस के और कुछ पोस्टर है जो नीला कलर का है।

यहाँ पे एक शोरूम हैं। शोरूम मैं बहुत सारे स्कूटी हैं ऊपर में बैलून लगा हुआ है कुछ फूलें हैं जो की ब्लू वाइट ग्रीन कलर में हैं।

यहाँ पर फोर लेन है | लेन के आगे एक जे.सी.बी. खड़ा है |एक शोरूम है जिसमे जे.सी.बी. बहुत है | कुछ बाइके हैं |

यहां पे एक ग्राउंड है ग्राउंड में कुछ बालूयें है और कुछ कंकड़ पत्थर है एक चेयर रखा हुआ है ग्राउंड में जो कि लकड़ी का है।

- -जो की वाइट कलर में है और रेड कलर में है निचे बहुत सारी फोरव्हीलर है हैं और अ --

ये पुल के रड है जो कि येलो कलर में है और ब्लैक कलर में खंभा है एक मोटा सा खंभा है ऊपर में पूरा नीला आसमान है और बहुत सारे पेड़-पौधे है।